पानी पे इस आदमी का रिफ्लेक्शन हो रहा है।

से पेड़ भी दिख रहा है।

यह दृश्य एक फैक्ट्री की है।

गेट के पास दो लोग खड़े है एक सफेद रंग का कपड़ा पहना है।

साइड में एक गमला नजर आ रहे है जिस के अंदर विरयानी है और दो कटोरी है जिसके अंदर चटनी और दही है।

स्टेज के नीचे एक आदमी दिख रहा है और स्टेज में एक चेयर लगी हुई है जो की लाल रंग की है।

एक पेड़ लगी हुई है और बहुत सारे गाड़ी भी लगी हुई हैं।

एक बाइक नजर आ रहा है।

इसमें लॉकअप रेस्टोरेंट एण्ड बैंक्वेट लिखा हुआ है एण्ड कॉन्टैक्ट फॉर केटरिंग सर्विस भी लिखी हुई है।

यहां पे पेट्रोल पंप के पीछे पेड़ लगे हुए हैं और साइड में भी पेड़ लगे हुए हैं।

यहां तीन आदमी आया हुआ है कुछ सामान लेने और अंदर एक ओनर है जोकि काले रंग का टी शर्ट पहना हुआ है।

इस दृश्य ये में एक तालाब नज़र आ रहा है जहां लोग बोटिंग कर रहे--

उपर बैलून से सजावट की हुई है।

इस दृश्य में डी_जे दिख रहे हैं जिसमें चोगा लगा हुआ है।

यह दृश्य एक फल की दुकान की है।

इसमें एक मस्जिद भी नजर आ रही है।

यह दृश्य एक शादी का घर का है जहां कुछ लोग अपना तस्वीर खिंचवा रहे हैं।

पीछे येलो कलर की कवर रखी हुई है।

इस दृश्य में एक पिकनिक पॉइंट नजर आ रहा है।

लड़कियां ब्लू कलर का ब्लाउज पहनी है लाल कलर का साड़ी पहनी है और हाथों पर आलता लगाई हुई है।

आसमान ब्लू रंग की है और इसमें बादल है।

रेलवे स्टेशन सफेद और मैरून कलर से पेंट किया हुआ है।